तीन मंजिल है बिल्डिंग के नीचे बहोत सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं।

कुछ बच्चे व्हाइट ऐंड रेड चूनरी में खड़े हुए है।

साइड में एक ए.सी. लगा हुआ है।

और साइड में एक बस है जो रेड कलर में है।

और बड़ा सा गेट भी है साइड में बहुत बड़े-बड़े --

पीछे की तरफ एक बहोत बड़ा पेड़ है।

और साइड से लोहे के खंबे में जाली लगा कर घेराव किया गया है।

एक गाय है जो सफ़ेद और काला कलर के है।

एक मंदिर है जिसके अंदर पांच-छै भगवान हैं सामने --

ये सजाए गए है और लाइट को लाइन से लगाए गए है।

बोट को रेड वाइट बलून्स से सजाया गया है पीछे के तरफ सूरज दिख रहा है।

और इसको अच्छी तरह बेल्ट से बांधा गया है।